बड़ी सी एक चट्टान रखी हुई है जो कि काले कलर में दिखाई दे रही है और यहां पर एक गेट लगा हुआ है जिसमे ताला लगा हुआ है सफेद कलर का ताला है।

उसके दोनों तरफ मूर्तियां बनी हुई है। जो की खड़े हुए हैं मूर्ति में उनके सिरों पर मुकुट लगे हुए हैं इस चट्टानों में बहुत बैठे हुए हैं --